उसके बाहर एक नीले कलर की कार भी खड़ी हुई है दिखाई दे रही है बाहर सफेद सफेद कलर का ग्रिल बनी हुई दिखाई दे रही है मोटरसाइकिल खड़ी --

मुझे इस तस्वीर में एयरटेल का ऑफिस दिखाई दे रहा है इसके सामने कांच पर पे और रिचार्ज लिखा हुआ है एण्ड एयरटेल पोस्टपेड ऑफिस लिखा हुआ है।

मोटर साइकिल भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है और आस पास बड़े-बड़े पेड़-पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

आउटपिन भी रखी है एक ए_सी का आउट्लेट भी दिखा दे रहा है और एक लेडीज भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

ए इस तस्वीर में दो टेबल रखी हुई दिखाई दे रही है एक नीले कलर की टेबल है तो एक पीले कलर की टेबल है उसके ऊपर दो कंप्यूटर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

में ऊपर बलून लगे हुए दिखाई दे रहे हैं रेड कलर और येलो कलर के बलून लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक आइडिया का ऑफिस दिखाई दे रहा है जिसके बाहर नीले कलर के पट्टी पे पीले कलर से आइडिया लिखा हुआ है और उसके ऊपर कांच पर फोर जी लिखा हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे एक शोरूम दिखाई दे री है यहां एक इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है जहाँ पे बहुत सारे टी.वी. फ्रिज रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

कुछ किड्स वियर के कपड़े टंगे हुए हैं सामने बहुत सारे डमी भी लगी हुई दिखाई दे रहे हैं पीछे फ्लेक्स है मम्मी और डैडी लिखा हुआ है।